पर एक दुकान दिखाई दे रही है। जिसमे कुछ फ़र्निचर दिखाई दे रहा जिसका कलर ब्राउन दिखाई दे रहा है। यहा पर कुछ काच भी दिखाई दे रही है।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

पर एक हॉल दिखाई दे रहा है जिसकी दीवारों का कलर ग्रीन व्हाइट दिखाई दे रहा है और कु--

एक ब्रिज दिखाई दे रहा है और कुछ चट्टानें दिखाई दे रही है।

और कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिनका कलर व्हाइट दिखाई दे रहा है यहा पर कई सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे है और कई सारे व्हाइट ब कलर के चेअर दिखाई--

कई सारे बाइक दिखाई दे रही है जिनका कलर ब्लॅक दिखाई दे रहा है और कुछ पेड़े पौधे दिखाई दे रहे है जिनका कलर ग्रीन दिखाई दे रहा--